मारुति सुजुकी दिख रहा--

इस चित्र में एक पुराना घर दिख रहा है।

भोपाल जंक्शन दिख रहा--

यह पार्टी ऑफिस नजर आ रहा है कुछ लोग--

चित्र में एक बड़ा हॉल --

तालाब दिख रहा है।

इस चित्र में महाऋषि उत्सव--

इस चित्र में एक--

चित्र में एक स्टेशनरी दिख रही है।

एक सुंदर हॉल दिख रहा है हरे पेड़ दिख रहे--

चर्च दिख रहा है।

सड़क दिख रही है। बहोत सारी गाड़ियां जा रही है।

बड़ी बिल्डींगे --